एक साउंड स्पीकर भी दिखाई दे रहें हैं बहुत --

और इसमें दो हेडलाइट दिखाई दे रहा है एक --

और जो मैदान में कुछ घासें भी नजर आ रही हैं।

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे की बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बाढ़ का भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा हे पीछे एक पानी की टंकी दिखाई दे रही हे।

एक उनके साइड में बैग उग दिखाई दे रहा है।

और पायलट भी लिखा हुआ है।

और यहाँ पे कुछ और भी सामान दिखाई दे रहा है।

ऊपर की एक स्तंभ दिखाई दे रहा है यहाँ।

और अ यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ बैठक यान भी बना हुआ है।